मंदिर का नजारा गोल्ड करल का है।

पास एक बोर्ड लगा हुआ है।

और ऊपर वाली साइड खिड़की पे एयरप्लेन बना हुआ है उसके साथ कुछ सीढ़ियां है जो कि ऊपर को जाती है।

बहुत सारे लोग मंदिर के आसपास खड़े है।

तीन आदमी में से एक आदमी के पास एक बाइक है बाइक का रंग ब्लैक कलर का--